गणेश भगवान का मूर्ति है जो की यहां बहुत अच्छा से सजाया है फूल से।

शरीर भी टाइट रहता है बहुत अच्छा लगता है जिम करना।

यहाँ बहोत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है जो की बहोत ऊंचा बिल्डिंग है। देखने में बहोत अच्छा लग रहा है और --

बहुत सारा लाइट्स लगा है। बहुत सारा डी.जे. लाया है जो कि बहोत --